लाइन में खड़े हुए हैऔर कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है और उसपे बैंक का निशान और स्टेट बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि छाँव देने के लिए लगाए गए हुए हैं।

कर रहे हैं और एक लड़का अपनी सेल्फ़ी लेते हुए दिखाया गया हुआ है और पीछे के साइड में कुछ लोग भी दिखाए गए --

यह फोटो दिवाल की है जिसमें उन लोगों के फोटो लगे हुए हैं जिनके किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हुआ है।

यह फोटो किसी तालाब का है जिसमे काफी सारी पानी भारा हुआ है और---- ]